यह एक कैफे का फोटो है और यहां पर रात का अंधेरा है और काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी जिम करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में तीन कार खड़ी हुई हैं एक सफेद है एक काली है और एक काली और सफेद है।